यह एक मॉल दिखाई दे रहा है।

यहां पर छत दिखाई दे रही है।

फॉरेस्ट डिविजन पठानकोट लिखा हुआ है और यहां पर--

और जमीन भी दिखाई दे रही हैं।

और बहोत सारा पानी भी दिख रहा है और बोहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां विंडो भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक मिरर दिखाई दे रहा है।

यहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं और मिरर भी दिखाई दे रहा है और--

बाइक्स भी दिखाई दे रही हैं और लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

और जमीन भी दिखाई दे रही है।

और यहां छत भी दिखाई दे रही है।